यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

फिर एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।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

घर का नीचे में का शॉप दिखाई दे रहा है।

एक पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।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

एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

और एक ऑरेंज कलर का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

एक पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।

रस्ता में एक बाइक दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में बहुत सारा लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

फिर एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक टीना घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक रूम दिखाई दे रहा हैं।

सैलून में लाइट भी दिखाई दे रहा है।

और एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिख रहा है।

यहां पे एक फील्ड दिखाई दे रहा हैं।

रूम का अंदर में एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

वॉल का साइड में दो साइनबोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का आगे में एक बैनर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बुक्स भी दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारे खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का आगे में बहुत सारा फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है।

एक लड़का का पास रेड कलर का चप्पल दिखाई दे रहा है।

दोनों के पास दो कप भी दिखाई दे रहा है।

टिशू पेपर भी दिख दिखाई दे रहा है।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

एक ग्रीन कलर का कारपेट भी दिखाई दे रहा है।

दो चप्पल भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक ठेला गाड़ी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक चर्च दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारा अंब्रेला भी दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर में अलमारी दिखाई दे रहा है।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

नीचे मे एक कार्टून बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में वायर भी दिखाई दे रहा है।

रूम में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

रूम में एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।